और यहां पे बस भी खड़ी है। येलो कलर की बस है और एक छोटी-सी साइकिल भी खड़ी है और वो साइकिल के बगल में एक पौधा है।

और बगल में हरे-हरे पेड़ भी दिख रहे हैं। लाइट्स वगैरह जल रही है। रात का समय है यहां पे और नीचे भी हरियाली लग रही है।

और यहाँ पे ढ़लैया हो रही है जो सीमेंट और गिट्टी से की जाती है और एक यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है।

यह रोड है और रोड के जो बीच डिवाइडर होता है वहाँ पर एक देखिए यह लड़का खड़ा होकर अपनी सेल्फी ले रहा है। इसके --

आप देख सकते हैं। यह रोड साइड दुकान है और यहाँ पे अ मोसमी मिल रही है जो बहुत ही हरी है।

और काफी ढेर सारी मछलियां हैं और बोहोत फ्रेश है सब अभी जस्ट जैसे लाके रखी गई हैं और यहां पे --

कै लड़का भी खड़ा हुआ है बगल में एक और दुकान है शटर है जहाँ पे वो गिरा हुआ है शटर बंद --